दिखाई दे रखिया है सा पेड़ डूंगर --

इन लागे जाने एग्जाम उ छुटिया है सा टाबर टोली बाइका खड़ी हैं पेड़ पौधा रे नीचे स्टूडेंट घूम रहिया है।

कोई बाता कर रही है कोई बेट लेर दड़ी रो इंतज़ार कर रहियो है सा।

लोहा आलो गेट है दिवार हो रखी है मायने ईंटा पड़ी है सा।